यहां एक पादरी खड़ा है बहुत सारे लोग खड़े हैं झंडा फहरा रहे हैं।

ये सेंटर काफी सुंदर और बड़ा है।

जिनकी दीवारों पर स्त्री छुपी हुई हैं।

ये तस्वीर एक मकान की है।

इसमें बहुत सारी ग्रिल लगी हुई हैं।

ये तस्वीर एक बहुत बड़ी मछली की है।

यहां पर और भी कश्तियां हैं।

उसके पास बहोत सारी पेड़ पौधे और झाड़ियां भी है।

यहां पर कुछ आदमी भी खड़े हुए हैं।

यहाँ बहोत सारी खिडकियाँ भीं हैं।

ये बहुत ही बड़ा कमरा है।

ये तस्वीर एक सड़क की है।

यहां से बहुत सारी काले रंग की कारें --

यहां कई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चल रही है।

बहोत सारे लोहे के जाल भी हैं।

ये तस्वीर एक मंडी की है।

ये तस्वीर एक होटल की है।